ये जो पिक्चर है एक तबेले की पिक्चर है जिसमें दो भैंसे हैं दिखाई गई हैं।

लोगों के लिए जो बैठने के लिए चेयरे लगाई हुई हैं चेयरे जो हैं ब्लैक कलर की हैं।

सामने से दीव दरवाजा जो है दिख रहा है हॉल जो है लंबे तरह का हॉल है।

ये जो पिक्चर है एक बहोत ही बड़े जो पीछे हैं पहाड़ दिख रहे हैं।

बहोत ही सुंदर और बहोत ही बड़ा जो है ये मंदिर बना हुआ है।

ये जो पिक्चर है एक बैंक की पिक्चर है पिक्चर में देखा गया है --